यहाँ पर आप देख सकते है आपको एक पार्क दिखाई दे रहा है।

जिसमे हमें बहुत से खिलौने कलाकृतियां बनी हुई है

यहाँ पर आप देख सकते हो की एक म मैदान है जिसमे हरे हरे पत्ते लगे हुए है और जिसमे छोटी-छोटी कुछ कलाकृति बनी हुई--